ये एक होटल का रूम लग रहा है और--

यह एक सिटी सैलून सेंटर दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ बाहर चेयर है जो लाल कलर की हैं।

अर्र इसका जो दीवारों का कलर हैं वो क्रीम कलर --

कॉम्बिनेशन के साथ इसमें पेंटिंग हुई है और नीचे भी कुछ ज्वैलरी रखी है रिंग रखे हैं।

ये एक प्रकार की चर्च की बिल्डिंग है चर्च का भवन हैं।

ये एक रोड दिखाई दे रहा हैं जो--

अ व्हाइट कलर कि इस में लेयर लगी हुई हैं और बादल लगे हुए मौसम बहोत खराब है और इसके पास लगती हु कुछ बिल्डिंगे हैं।

और एक लाल कलर की टोपी और ब्लै ब्लैक कलर की डेनिम और वाइट कलर की --

यहां छोटे छोटे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं ये कमरे में--

बैक में पीछे काला सा पर्दा लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी बच्चों ने--

आसमान साफ है और यहां पर कुछ कायल के पेड़ हैं और कुछ ब्लैक कलर की यहां पर ग्रिल्स लगी हुई है।

और बाहर बैठने के लिए बेंच है उसका कलर --

ब्राऊन कलर की टाइलें दिख रही हैं और व्हाइट और रेड कलर की यहां पर प्लेट नेम प्लेट लगी--

यहां पर एक लड़का खड़ा है और ग्रे और ब्लैक कलर का उसने--

और ब्लैक और व्हाइट की भी है और पीले कलर की यहां पर ट्रे लगी हुई है।

और यहां पर चलने के लिए जो रास्ता है उसमें--

अ एन_एच डबल टू है और बहोत ही सुंदर है यहां पर वाइट कलर की अ बहोत ही सुंदर एक गाड़ी लगी हुई है एक अंदर एक गाड़ी लगी हुई है एक बाहर--

और बहोत ही सुंदर लग रही है और एक मोर यहां पर शांत अपने पं पंखों को--

जी को देख रहे हैं व्हाईट कलर की शर्ट पहनी है और बुक को अपने टेबल पर रखा है और पिंक --